इस फोटो में हमें सामने की साइड एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर के पीछे के एक मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है।

साइड में कुछ छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यार एक लंबा खंबा भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ वायर लटके हुए दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में हमें सामने की साइड एक लंबा पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ बैनर लगे हुए हैं जिस पर फैमिली ढाबा लिखा हुआ है।

सामने कुछ पेड़ पौधे और भी दिखाई दे रहे है साइड में एक डस्टबीन रखा हुआ है।

नीचे की साइड कच्चा मैदान भी दिखाई दे रहा है और पीछे के साइड कुछ हरे-हरे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें सामने की साइड दो दुकानें दिखाई दे रही हैं।

खंबा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ वायर लगी हुई दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस व्यक्ति ने सर पर टोपी और सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी है और फेस पर मार्क्स लगा रखा है।

उसने हाथों पर ग्लास पहन रखे हैं यह हाथ में कुछ मशीन जैसा ले रहा है जो वायर कट रहा है।

बराबर में भी एक बैनर लगा हुआ है और कुछ वायर भी लटकी हुई दिखाई दे रही है।

बराबर में एक खंभा लगा हुआ है जिस पर लंबी वायर जाती हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी केराना की दुकान से लिया गया है।

इस फोटो में हमें एक लंबा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब एकदम साफ है।